एक लड़का रेड कलर की टी-शर्ट पहने हुए खड़ा दिखाई दे रहा है |

यहाँ पर मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रहा है जिसके बिल्डिंग मुझे बहुत बड़ी और वाइट कलर की दिखाई दे रही है।

टी-शर्ट पहनी हुई है और उस टी-शर्ट पे वाइट कलर की कुछ पट्टी दिख रही है उस उ --

एक के हाथ में मुझे गाड़ी का हेलमेट दिखाई दे रहा है तीनों ने ही सफ़ेद कलर की शर्ट और टी-शर्ट ऐ --

यहाँ पर मुझे बहुत ही बड़ी श्रीराम फाइनेंस की लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जिसकी बिल्डिंग बहुत ही बड़ी है इसमे |

यहां पर मुझे बहुत सारा सामान और टिशू पेपर रखा दिखाई दे रहा है।

सजी हुई है जिसमें की व्हाइट कलर की साड़ी और रेड कलर का ब्लाउज पहनी हुई है पीछे पे मुझे --

मुझे खड़े और कुछ लोग मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं दीवाल के ऊपर मुझे रेड और ग्रीन कलर की --

यहाँ पर मुझे एक छोटा-सा गार्डन भी दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही --